ये बिल्डिंग बहुत ही ऊँची दिखाई दे रही है इसका कलर येलो और ग्रीन कलर से हुआ हुआ है।

और फेडरल बैंक का ए_टी_एम भी कोने में है एक फोरवील पड़ी हुई है दो बाइक पड़ी हुई है इधर से दो लोग जा रहे है।